यहां पर तीन महिलाएं और एक आदमी खड़ा है साड़ी पहना हुई है महिलाओं के--

और इस कॉलेज के इधर साइड में बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं इसके बाहर भी चार्ट बने हुए हैं।

और इस गेट के बाहर एक है बहोत ही बड़ा पेड़ है जिसकी छाया है इस शेर के --

और यहां पर चाट बने हुए है सामने टेंट लगा हुआ है टेंट के पीछे बहोत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है पेड़ों के पीछे बहोत ज्यादा घर है।

स्कूल के बाहर ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर छोटी छोटी घास ऊगी हुई है जिससे कि ग्राउंड हरा भरा दिखाई देता है।

बेंच है बेंच के ऊपर प्लेट है प्लेट में दो तीन चम्मच है पानी की बोतल है गिलास वगैरा रखी हुई है।

इस तस्वीर में एक बस दिखाई दे रही है बस के आगे एक पुलिसमेन खड़ा है।

छोटे छोटे गमले पड़े हैं गमलों के ऊपर छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।